और यहाँ पे बहुत सारे दूकान लगे हुए है।

इस जगह के चारो ओर घर बने हुए है।

यह एक हेयर कटिंग सैलून है।

टेबुल और कुर्सियां लगी हुई है।

इलाज करवाने के लिए भी आते है।

और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी है।

और यहाँ बहुत ही भीड़ है।

इस घर में बहुत सारे रूम बने हुए है।